यह एक मंदिर है और यह मंदिर बहुत ही बड़ा है यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा करने आते हैं इस मंदिर में बहुत सारी घंटियां लगाई गई हैं और लाइटे लगाई गई हैं लोग यहाँ पे आके पूजा करना पसंद करते हैं।

इस पानी में लोग सिंचाई करते हैं। इसमें मछली पालन किया जाता है। इससे डेयरी उत्पादन किया जाता है और यहाँ डेम में लोग घूमने भी आना पसंद करते हैं।

यह एक बस स्टेंड है और यह बस स्टेंड काफी बड़ा है।